स्टैंडर्ड वन से --

यह एक मैदान है जो मैदान के किनारे बिजली का तार गिरा हुआ है और यह बिजली का तार तैंतीस हजार वाला है और यहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत नजारा है और इसके बगल में एक बड़ा घर --

और यह जो में मैरिज हॉल है। यही पर शादी हुआ है। और बड़ी ही धूम-धाम से शादी --

अपना सिक्स पैक दिखा रहा है जो उसके पीछे एक लड़का खड़ा है और जिम में एक्सरसाइज किये जाते हैं।